वह लाल रंग की है कप के अंदर चाय भरा हुआ है इसके उपर नेस्कैफ लिखा हुआ है।

दिखाई दे रहे है लकड़ी का रैक बना हुआ है रैक में बहुत सारे कपड़े रखे हुए है दीवारे सफ़ेद व हरे रंग की है।

इसके अंदर ढेर सारे दरवाजे व खिड़कियाँ है इसके पास एक बड़ा पेड़ भी है।

रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए है जमीन पर सफ़ेद रंग के चादर बिछे हुए है एक लकड़ी का छोटा स्टूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह लोग जमीन को ढालते हुए दिखाई दे रहे है आस पास घने व बड़े पेड़ भी है।